सामने के तरफ एक व्यक्ति कोने में काले रंग का कोट पहने--

एक बड़े से पेड़ के पास में--

जिसमें रंग बिरंगे फूलों और ग़ुड़ियाओँ के डिजाइने बनी हैं।

नीचे की तरफ भी एक स्टील की लंबी रोड दिख रही है।

सामने मूर्तियों के फाउंडेशन के नीचे लाल रंग के दो फूल पड़े दिख रहै है।

ऊपर इसमें गुलाबी रंग का पट्टा या टीन सेड जैसा लगा हैं।

इसमें काले -काले पट्टी भी दिख रहे हैं पीछे एक हरे रंग के दो बड़े पेड़ दिख --

एक रोड में बहुत सारी ऑटोए दिख रही हैं।

एक तरफ चैनल गेट है दूसरे तरफ बड़ा सा गेट खुला हुआ है।

एक तरप कोने में बीम पर लाल रंग का कुछ एक राउंड में पाइप लपटा हुआ है।

जबकि पर्दों का रंग सफेद और गुलाबी है।

बीच के पिलर पर भी डिजाइने बनी है।

और सामने की तरफ से बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त भी है इसमें दो सीढ़ियां --

आसपास में हरे रंग के घाँस उगी हुई है पीछे बड़े-बड़े हरे रंग के दो पेड़ दिख रहे हैं।